यहाँ एक बड़ा मकान भी दिखाई दे रहा है मकान के आस पास कुछ बत्तियां दिखाई दे रहा है और बहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रस्सी भी दिखाई दे रहा है और लोहे का चैन भी दिखाई दे रहा है जिससे गाड़ी बंधा हुआ है ।